इस चित्र में माईको मेक्स केयर की अ माइक्रो मेक्स केयर की शॉप दिखाई दे रही है इसमें एक--

बाइक और एक ट्रक खड़ी नजर आ रही है अ बाहर कि इस दीवार पर इंटेक्स थ्री जी लिखा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एल स्टेट बैंक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है सा बहार की तरफ ओरते खड़ी हुई --

बातें करती नज़र आ रही हैं सामने एक बुड्ढी अम्मा भी बैठी हुई हैं एक व्यक्ति अन्दर है एक व्यक्ति बाहर खड़ा दिखाई दे रहा है।

ये चित्र भारतीय डाक इंडिया पोस्ट का है इसमें बाहर की तरफ दो बाइके खड़ी हुई है।

इसमें से बहुत सारी खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही हैं रोपड़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है लाल और सफ़ेद रंग का बोर्ड है।

इस चित्र में एक बड़ा खेत दिखाई दे रहा है इसमें फसले लेले आती नज़र आ रही है अस--

ये चित्र एक हॉस्पिटल का लग रहा है इसमें दो गेट बड़े बड़े दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में बच्चो का सामान रखा दिखाई दे रहा है और सामने एक --

इस चित्र में कुर्सी टेबल लगी नज़र आ रही हैं ये चित्र शादी हॉल का ल दिखाई दे रहा है बीच में टेबल और आसपास कुर्सियां--

दिखाई दे रहे है हरे भरे पेड़ भी पीछे की तरफ नज़र आ रहे है निचे छोटे छोटे हरी घास--

बनी हुई दिखाई दे रही निचे की तरफ बहोत सारे शटर लगे नजर आ रहे है एक हर भरा पेड़ भी दिख रहा है।

ये जुलो पर जुल रहे है कुछ बच्चे मिक्की माउस पे लाल रंग की कुर्सियों पर कुछ बेठ कर खाते हुए दिखाई--

इस चित्र में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है इसमें सामने ऊपर की तरफ बोहोत सारी लाइट --

पी रखी नजर आ रही है एक सिंग लगा नजर आ रहा है नल का।

इस चित्र में एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है सामने एक छोटा सा घर जैसा नज़र आ रहा है ये--

बिच में एक बड़ा गेट लगा हुआ है साइड में एक शटर कथाई रंग का नज़र आ रहा है सूखी सूखी लंबे पेड़ दिखाई दे रहे--

उपर की तरफ अ लाइट दिख रही है पीछे हरे भरे दिखाई दे रहे कुछ ठेले खड़े नजर--

ये चित्र एक शादी का लग रहा है इसमें बड़ा सा सुन्दर सा स्टेज बना हुआ है जो फूलो से --

सझा हुआ है बहर पीछे निचे की तरफ कुर्सिया रखी है जिसमे सब बाते क्र रहे है बेठ कर--

कर बाते कर रहे है बहर की तरफ काले रंग की कुर्सिया रखी दिखाई दे रही है सामने मेनेजर का बोर्ड लगा हुआ है।

चित्र में एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है सामने कुछ स्कूल जेसे बने नज़र आ रहे है।

पट्टी पर खड़े हुए हैं ऊपर कुछ काम चलता नज़र आ रहा है सड़क पे आसपास गाड़ियाँ आती जाती दिखाई दे रही हैं।

लगी हुई है बहुत सारे लोग बैठे नज़र आ रहे हैं कुर्सी पर एक बाहर एक सींग भी रखा हुआ है एक बाल्टी नीले रंग की न --

इस चित्र में एक क्लिनिक डॉक्टर का क्लिनिक दिखाई दे रहा है सामने घड़ी लगी नज़र आ रही है।

एक बड़ा पंखा च दिख रहा है एक टेबल लगी हुई है एक कुर्सी लगी हुई है सामने एक का बेड दिख रहा है।

इस चित्र में एक रेस्ट्रोरेन्ट जैसा दिखाई दे रहा है लाल लाल लाइटे लगती नजर आ रही है दो ट--

तरफ खड़ा हुआ यह पीछे ऊँचा एक पथर लगा दिखाई दे रहा है सामने एक फुटबोल भी नजर आ--

हमको नजर आ रहा है दीवार पर एक पंखा एक घड़ी नजर आ रही है साइड की तरफ लाल और सफेद रंग के गुब्बारे लगे नजर--

पीछे एक डी_जे के पास एक व्यक्ति बेठा है डी_जे बोहोत बड़े बड़े रखे हुए दिखाई दे रहे है।

और डंडा भी दिखाई दे रहा है एक टेबल नजर आ रही है जिसपे कुछ चार्जिंग पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे दो व्यक्ति खड़े हुए एक औरत और एक महिला एक औरत और एक व्यक्ति जाते दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ एक हरा पेड़ भी लग --

चित्र में बोहोत सारी फोटो कॉपी की मशीने रखी जेसी दिखाई दे रही है एक लैपटॉप --

सामने रखा हुआ है दो कुर्सिया रखी हुई दिखाई दे रही है दीवार पर सिंदरी लगी हुई है।

इस चित्र में एक अ एक स्टेज दिखाई दे रहा है जिसकी सझावट की जा रही है दो व्यक्ति खड़े हुए कुछ व्यक्--

कत्थई हो रहे हैं कुछ हरे भरे दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ हरी हरी घास भी दिखाई दे रही है।

एम्बुलेंस एक एंबुलेंस खड़ी दिख रही है साइड की तरफ एक स्कॉर्पियो उम्म भी खड़ी हु--

इस चित्र मे एक गुफा जैसी दिखाई दे रही है व्यक्ति गुफा के अंदर खड़ा नजर आ रहा है जो लाल--

अह और सफेद रंग की टी शर्ट पहना हुआ है काले जूते पहना है गुफा के ऊपर बहुत ऊंचाई नजर आ रही--

एक व्यक्ति सामने जाता नज़र आरहा है कार और बाइके आती जाती दिखाई दे --

इस चित्र में एक नर्सरी जैसी दिखाई दे रही बाहर की तरफ बहुत सारी कुंडिया रख।

इस चित्र में चाय की होटल दिखाई दे रही है ऊपर बहुत सारे कुल्रहड़ रखे नजर आ रहे हैं साइड में ब्रेड के पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं नीचे डस्टबिन रखा हुआ है।